यहां पास बहुत सारे लोग खाना पीना खा रहे हैं।

यहां पास बहोत सारी सफेद कलर की कार खड़ी हैं।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

कैमरे और लाइट लगाए गए हैं यहां पास बहोत सारी दुकानें बनी हुई है।

चारों ओर लाइट लगी हुई हैं यहां पर बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं।

चारों ओर कैमरे लगे हुए हैं। यहां पास बहोत सारी दुकाने बनी हुई है।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

इस फोटो मे मुझे एक बहोत बड़ा मंदिर दिखाई दे रहा है साथ मे यहां पर मंदिर के पास मे बहोत सारे लोग खड़े हुए है।